मकान निर्माणाधीन है और यहाँ पे इस मकान का निर्माण कार्य चल रहा है कुछ लेबर काम कर रहें हैं।